यहां पे हमें बहोत सारी दवाइया दिख--

फेविकोल की बॉटल दिख रही है वायर्स दिख रहे हैं।

ये एक डाकघर दिखाई दे रहा है यहां हमें ये--